फूल का कलर सफेद और लाल है।

यहां पे एक चद्दर भी बिछाया गया है जो हरे रंग का है।

उसेपे कुछ आदमी है एक आदमी ने एक सफेद कलर का टी शर्ट तो एक ने काला कलर का टी शर्ट पहन रखा है।

यहां पे कुछ बाइके भी हैं एक जगह पे बहोत सारे आदमी बैठे हुए है।

गाय का कलर काला सफेद है।

यहां पे बहुत सारी चेयरस लगे हुए हैं चेयरस का कलर सिल्वर है।

यहां पे कुछ आदमी भी बैठे हुए हैं।

गोदरेज है गोदरेज का कलर लाल है।

यह मूर्तियों को लाल कलर का ड्रेस पहनाया गया है।

इसका नाम इंडियन टैटू है।

मेज वहां पे बहुत सारे टैटू भी बने हुए हैं।

यह एक घर के अंदर का चित्र है।

बैलून का कलर सफेद लाल ब्लू है।

बाहर में बहुत सारा गाड़ी रखा हुआ है।

एक सिक्युरिटी गार्ड के ड्रेस में एक आदमी है।

यहां पर बहोत सारे छोटे छोटे गाय के बच्चे भी हैं इसका कलर मैरून में है।

ऊपर में सफेद कलर का पुट्टी किया गया है।

यहाँ पे आस पास में बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

इहा पे ग्रीन कलर का दिवाल है।

और बहोत सारे स्टूडेंट भी है।

यह एक स्टेचू का चित्र है।

यहां पे एक घड़ी लगाया गया है।

नीचे में सफेद कलर का टाइल्स है।

यह एक पोखर का चित्र है।

यह एक बहुत बड़े घर का चित्र है जिसका कलर पीला और सफेद है।

पीला बोर्ड लगा हुआ है।

जानवर का नाम गधा है।

यहां पे तीन स्टांप भी गाड़े हुए हैं।

एक पानी का जार भी रखा हुआ है।

एक गेट दिखाई दे रहा हैं जिसपे कुछ लिखा रूम नंबर लिखा हुआ है।

यहां पे दो चेयर्स लगे हुए हैं चेयर का कलर ब्लू है।

कम कमा कलम दान भी है इसमें बहुत सारी कमा कलम है।

यहां पे एक बहुत बड़ा टेबल भी रखा हुआ है।

चेयर पे व्हाइट कलर का कपड़ा चढ़ाया गया है।

जालीदार खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

का कलर ब्लू और लाल है।